वी आई रोड है यहाँ पर आदमी चर रहा है और --

अम अह एक दो आदमी खरा हुआ है और रोड के के कर बस चर रहा है और रोड पर आदमी भी चर रहा है और स्कूटर लगा हुआ पीछे घर भी है और घर में टेंट लगा हुआ है और लग रहा है कि स्कूल में सब लइकन परने जा रहा --